जावा में न्यूमेरिकल डेटाटाइप पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जावा में उपलब्ध विभिन्न न्यूमेरिकल डेटाटाइप और न्यूमेरिकल डेटा को संचित करने के लिए उनका उपयोग कैसे करें
इस ट्यूटोरियल के लिए हम उपयोग कर रहे हैं
उबंटु 1110 जेडीके16 और इक्लिप्स 37 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि इक्लिप्स में साधारण जावा प्रोग्राम को कैसे लिखे और रन करें
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएँ
इंटिजर्स को संचित करने के लिए उपयोगित डेटा टाइप को इंट कहते हैं
दशमलव संख्या को संचित करने के लिए उपयोगित डेटा टाइप को फ्लोट कहते हैं
अब परिभाषित करते हैं और पहले इंटिजर्स का उपयोग करते हैं
यहाँ हमारे पास इक्लिप्स इडे है और बाकि कोड के लिए आवश्यक स्केलेटन है
हमने एक न्यूमेरिकल डेटा क्लास बनाया है और इसमें मैन मेथड जोडा है
अब देखें कि संख्या कैसे संचित होती है
इंट डिस्टेंस इक्वल टो 28 यह स्टेटमेंट डिस्टेंस नाम में इंटिजर वैल्यू संचित करता है
डिस्टेंस नाम को इंटिजर वेरिएबल कहते हैं
अब हम वेरिएबल डिस्टेंस का उपयोग उसमें संचित वैल्यू को प्रिंट करने के लिए करेंगे
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
पेरेंथीसेस में डिस्टेंस यह स्टेटमेंट वेरिएबल डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट करेगा
फाइल को सेव और रन करें
हम देख सकते हैं कि वैल्यू 28 डिस्टेंस में संचित हो गई है और यह प्रिंट हो गयी है
अब वेरिएबल में संचित वैल्यू को बदलें
28 को 24 में बदलें
सेव और रन करें
हम देख सकते हैं कि आउटपुट उसके अनुसार बदल गया है
इंट ऋणात्मक वैल्यूज को भी संचित कर सकता है
24 को माइनस 25 में बदलें
सेव और रन करें
हम देख सकते हैं कि इंट टाइप के वेरिएबल में ऋणात्मक वैल्यूज भी संचित हो सकती हैं
डेटा टाइप इंट हमारे अधिकतर प्रोग्रामिंग जरुरत के लिए पर्याप्त है
लेकिन यह वैल्यूज को केवल एक सीमा तक संचित कर सकता है
अब बडी वैल्यू को संचित करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है
हम देख सकते हैं कि यहाँ संख्या के नीचे रेड लाइन है जो कि एरर को दर्शाता है
एरर मैसेज दर्शाता हैthe नंबर इस आउट ओएफ रंगे फोर आ वेरिएबल ओएफ थे टाइप इंट इंट मेमरी का 32 बिट्स लेता है और केवल 2 पावर 31 से 2 पावर 31 तक वैल्यूज संचित कर सकता है
बडी संख्याओं को संचित करने के लिए जावा लोंग डेटा टाइप प्रदान करता है
अब इसका उपयोग बडी वैल्यू संचित करने के लिए करें
इंट को लोंग में बदले और संख्या के अंत में कैपिटल ल जोडें
Ctrl एस के साथ इसे सेव करें
हम देख सकते हैं कि अब यहाँ कोई एरर नहीं है
Ctrl फ़11 के साथ रन करें
वैल्यू प्रिंट हो गई है
हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्याओं को लोंग वेरिएबल में संचित किया जा सकता है
अब दशमलव संख्या को इंट वेरिएबल में संचित करें
लोंग को इंट में बदलें और संख्या को 235 करें
जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ एक एरर है
क्योंकि इंट केवल इंटिजर्स को संचित कर सकता है
दशमलव संख्याओं को संचित करने के लिए हमें फ्लोट का उपयोग करना होगा
डेटा टाइप को फ्लोट में बदलें
और वैल्यू के अंत में एक फ़ जोड़े
इसे सेव करें
हम देख सकते हैं अब यहाँ एरर नहीं है
कंट्रोल फ़11 के साथ रन करें
जैसे कि हम देख सकते हैं दशमलव वैल्यू संचित हो गई है और वैल्यू प्रिंट हो गई है
अब वेरिएबल डिस्टेंस की वैल्यू बदलें
दशमलव बिंदु के बाद कई संख्याएँ जोडें जैसे कि दिखाया गया है
इसे सेव और रन करें
हम देखते हैं कि जो संचित हुआ है आउटपुट उससे भिन्न है
ऐसा होता है क्योंकि यहाँ फ्लोटिंग प्वाईंट संख्या की स्पष्टता की एक सीमा होती है
यह निकटतम संभव संख्या की समाप्ति है यदि यह सही से संचित नहीं किया जा सकता है
अब वेरिएबल्स के लिए नामकरण नियम को देखें
नाम से पहले संख्या 2 जोड़ें
हम देखते हैं कि यहाँ एक सिंटेक्स एरर है
यह इसलिए क्योंकि एक वेरिएबल का नाम ऐल्फबेट या अंडरस्कोर के साथ शुरु होना चाहिए
लेकिन सामान्यतः अंडरस्कोर का उपयोग वेरिएबल के नाम को शुरु करने के लिए नहीं किया जाता है
अब वेरिएबल नाम के अंत में संख्या जोडें
हम देखते हैं कि यहाँ कोई एरर नहीं है
वेरिएबल के नाम में डिजिट्स हो सकती हैं लेकिन शुरुआत में नहीं
अब नाम के बीच में एक अंडरस्कोर जोडें
हम देखते हैं कि यहाँ कोई एरर नहीं है
जिसका अर्थ है कि अंडरस्कोर वेरिएबल नाम में हो सकता है
लेकिन वेरिएबल नाम में कोई भी अन्य पंगक्चूऐशन सिंटेक्स एरर या अन्य एरर्स देता है
इस प्रकार आप जावा में न्यूमेरिकल डेटा संचित करते हैं
यह हमें ट्यूटोरियल के अंत में लाता है
इस ट्यूटोरियल में हमनें विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल डेटाटाइप के बारे में सीखा
और न्यूमेरिकल डेटा को कैसे संचित करते हैं
और हमनें वेरिएबल नामकरण नियम को भी सीखा
इस ट्यूटोरियल के लिए नियत कार्य के रुप में अन्य न्यूमेरिकल डेटाटाइप के बारे में पढें और देखें कि वे इंट और फ्लोट से किस प्रकार भिन्न है
जावा ट्यूटोरियल्स निम्न लिंक पर उपलब्ध हैं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
httpspoken tutorialorgWhat is a Spoken Tutorial यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करने और देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
धन्यवाद